यहाँ पर एक नाव दिखाई दे रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है अगल-बगल बहुत सारी बिल्डिंगे जैसी कुछ दिखाई दे रही हैं।

ऊपर एक बहोत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद कलर से पेंट किया हुआ हैसभी पहाड़ो पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ के लाइट की ऊपर लाइट की तार जाते हुए साफ़ तौर पे देखा जा सकता है।

यहाँ के पे बहोत सारे पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैंनीचे कुछ घासें दिखाई दे रही हैंऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत सारे हंस एक साथ देखे जा सकते हैं और नीचे एक ग्राउंड कूपन दिखाई दे रहा है जिसकी ज्यादातर स्थानों पे घांस लगी हुई है।